एक बिल्डिंग है यहाँ पे बड़ा सा।

और यूनियन बैंक का ए.टी.एम भी है बाहर ।

और बस भी उधर खड़ी है सामने।

बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है यहाँ चारों ओर चट्टान --

बहुत सारा लोग उसमें जा रहा है बैंक में साइड में एक ट्रैक्टर खड़ी है और एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें ममता दीदी दिख रही है ।

ये कोई मंदिर है ।

बहुत सारा सब रखे ऊपर रखा हुआ है।

व ऊपर जो है ईशा मसीह का जो क्रॉस चिन्ह बना हुआ है।